इस दृश्य में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट नजर आ रहा है जहां पर बहोत सारे व्यक्ति और महिला दिख रहे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे और घास लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक शोरूम दिखाई दे रहा है जिसका नाम जे_पी हुंडई है।

और सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे है जिनके ऊपर कई लगा हुआ है।

इस दृश्य में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर काले कलर के कुर्सी लगी हुई है।

इस दृश्य में एक रूम दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

एक गेट भी दिख रहा है।

इस दृश्य में कुछ महिलाएं और व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और ऊपर आसमान दिख रहा है।